इस फोटो में यहां पर नजर आ रहा है।

वर्ल्ड स्कूल है इसके आगे दो गाड़ी पार्क है।

और यहां पर बहोत सारी चीजें दिख--

जैसे कि यहां पर गाड़ी खड़ी--